हरा हम देख सकते है कि यहाँ पे लाइटिंग भी हैं ।

इस चित्र में हम देख सकते है की ये ये खेलने के जगह है।

इस इस इस्तेमाल कर रहे है सभी चीज यहाँ पे--

मछलियों को तोल के धो के सफाई कर के सभी--

और उसके आजु-बाजु में हरे रंग के पौधे है हरे रंग के पेड़ है।

जहाँ पे खाली जगह पे बहुत सारे चीजों को खाबियो को डाले हुए लकड़ियों को ऐसे जगह दिख रही है।

और कुछ अंगार के जैसे--

और हम देख सकते है कि हरे रंग के बहुत खुबसप्ते पेड़ भी है।

यहाँ पे बहुत सारे अ हरे रंग के पेड़ है औ--

जो अभी बन रही है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ईंट लगाए हुएं हैं।

और एक आदमी बाहर है।